यहां पर हमे स्टेट बैंक ए_टीए_एम लिखा दिखाई दे रहा है जो की सफेद अक्षरों में लिखा हुआ है उसमें नीले कलर का पोस्टर भी लगा हुआ है और सफेद कलर का भी लगा हुआ है।